यह एक रूम है जिसमें टेबल सब लगा हुआ है और चेयर सभी रखा हुआ है इस साइड भी दो चेयर है।

यहां पे बहोत एक बड़ा टैंकर दिखाई दे रहा है यहां पे बालू दिखाई दे रहे हैं यहां पे--